बगल में एक कॉफी मशीन रखी हुई है कुछ बोटल्स रखी हुई है हाथ पे एक कॉफी का कप पकड़े हुए सामने कॉफ़ी की ग्लास रखे हुए है बगल में एक कॉफी मशीन रखी हुई है नीचे एक छोटा सा जग रखा हुआ है ।

एक लड़की है जो की अपने बालों पर हाथ रख रही है रेड कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

कुछ इसमें चदर बिछी हुई है सामने कुछ परदे डाले हुए है व्हाइट कलर की लेजर है ऊपर से कुछ पाइप्स है नीचे डस्टबीन रखी हुई हैं।

--नीचे एक चर्च है उसमें बैगनी कलर की लाइट रखी है चारों तरफ से डेकोरेशन और रखी है नीचे ग्रेन और रेड कलर की कारपेट है उसके आगे एक औरत खड़ी हुई है जो--

--एक ग्रीन कलर की साड़ी में है कुछ लोग हैं चारों तरफ से कुछ लोग हैं और कुछ बैलून से सजा के रखे हुए हैं बगल से पंडाल आगे हुए हैं उसमें कुछ लोग खड़े हुए है।